सामने तस्वीर में एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा है और उस प्राकृतिक दृश्य में दो पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है।

और उसी प्राकृतिक दृश्य के सामने जो है अ रोड पर एक मोटर साइकिल खड़ी की गई है और जिसमें यह दृश्य देखकर बहोत ही सुनहरा लग रहा है।

इस डैम की जो है अ काफी गहराई होती है और इसको संरक्षित करने के लिए अ डैम बनाए जाते हैं।

दी गई तस्वीर में हमें एक फलों की ठेली दिखाई दे रही है इन फलों में जैसे कि सेब तरबूज नाशपाती जैसे अलग-अलग प्रकार के हमें फल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।